यह एक कॉफी का दुकान है जिसमें एक फ्रिज रखा हुआ है बहुत सारे बोतल हैं इसमें जिसमें फैन हैं एक दुकानदार है जो कॉफी दे रहा है।

यह छठ पूजा का पिक्चर है जो नदी का है जिसमें बहुत सारे लड़के खड़े हुए है।

बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने मे है इसमें चार पाया बनाया गया है जिसके ऊपर प्लास्टिक के फूल से सजाया गया है।

तीन-तीन में मुर्गी हैं इसके दोनो पर एक-एक मुर्गी निकल कर ऊपर आ चुकी है बहोत सारी मुर्गियां है।